ये में अ बैठने के लिए सोफा रखा गया है और उसके पीछे ऐ चमकी मतलब --

पीला कलर का दीवाल टाइप खड़ा है और अगल बगल में कुर्सी है छोटे छोटे पौधे हैं।

सड़क है। सड़क पे दो कार खड़े हैं। कार के उधर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं एक सोलर है जिसपे लाइट जलता है और छोटे छोटे पौधे हैं और बड़े बड़े भी पौधे हैं।

एक बहोत बड़ा बगीचा है जिसमे फुल लगे हुए है और एक लेडीज खड़ी है और बहोत सारे हरे हरे पत्ते वाले पोधे लगे है।

एक बरा सा बिल्डिंग है बोहोत सारे इधर अगल बगल में बिल्डिंग है एक वाइट कलर का बिल्डिंग है ए_सी है एक एक आदमी खड़ा है बिल्डिंग के आगे एक कार है एक टेम्पू --

यहा पे एक टेबुल है कुर्सी भी है सोस भी रखा हुआ है और एक बरा सा फ्रिज है चिप्स भी है कार्टून भी रखा एक गेट भी है जाने आने के लिए--

ये रास्ता है पतला सा उसके अगल बगल में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

प्राचीन चंडी माता मंदिर है।

यहाँ पे एक आदमी खड़े हो कर--

और यहाँ पे कुछ इस्टार की तरह बना हुआ है उसके अन्दर एक पुतला है।

गेट उसे बोलै जाता है गेट के बहार भी जेंट्स लोग बैठे है।

जिसका रेट एक सौ चौतीस नब्बे पैंतालिस एक सौ चौदा छिहतर एक सौ आठ करके ऐसे करके प्राइस हुआ हैं।

अ रास्ता रास्ता मतलब अ पार्क की तरह है जिसमे पोधे लगे हुए है अगल बगल में बोहोत अच्छा फुल है लाल कलर का--

एक पार्क बना हुआ है जिसमे बहुत ही विसाल विसाल पेर है छोटे छोटे पेर है और पेर के जड़ में पत्थर रखा हुआ है जरो जार झंडा भी लगा हुआ है आड़ी आड़ी से--

ये मार्केट है मार्केट में बहोत जेंट्स लोग खड़े हैं और एक बड़ा सा फूल का माला बना हुआ है।

ये फूलो का बगीचा है और गमले में बहोत सारे फुल लगे हुए है पिला कलर का बेंगनी कलर के और यहा पे जर्ना है बरे बरे पोधे है और बोहोत सारे लोग यहा पे देखने आये है।

बोहोत ही बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग के निचे पोधे लगे हुए है और छोटे छोटे घास भी है फुल भी है अ बरे बरे मतलब दो बगीचे दिख रहे है।

ये बरा सा रास्ता है जिसके आरी आरी कार लगा हुआ है और कुछ जेंट्स लोग खड़े है पौधा है बहोत भी बड़ा बड़ा पेड़ है एक कार आ रहा है रास्ता के बीचों बीच बड़े बड़े बिल्डिंग है पौधे है।

ये बड़ा सा ग्राउंड है जिसमे बहोत सारे फूल लगे है हरी हरी पत्तिया है।

यहा पे एक आदमी बेठे है कुर्सी पर और एक आदमी खरे है जो उसके बाल बना रहे है और जो बेठे आदमी जो बैठे ओ मोबाइल ले कर अपना फोटो खीच रहे है।

एक खेत है खेत में हरी हरी घाच ल मतलब हरी हरी पोधे है हरी हरी घास है फुलो का पोधा है और उसमे से पानी का छिटा आ रहा है।

ऐ शॉप है शॉप में बहोत सारे गिटार हैं ढोलक है बैग भी है।

अ एच_पि ओल है तेल वाला जिसमे बरा सा अ ओइल तेल है फैक्ट्री है मतलब तेल डालने वाला बोहोत सारे कार खड़े है लोग खरे है आदमी खरे है और ये पेट्रोल पंप है।

ये एक बहोत ही पुराना किला दिख रहा है किला के ऊपर--

काम पे जहा पे हीरो लिख है हीरो का पोस्टर लगा हुआ है।

आज अगल बगल में कुर्सी है पोस्टर लगा हुआ है।

एक क्लास है क्लास में छोटे छोटे बच्चे और बचिया लोग पड़ाई कर रहे है और एक मैंडम खरी है जो बच्चे लोग को पड़ारे और बच्चे लोग अपना नोट बुक और स्टूमर बेग्स रखे है टेबल पे आपने स्टूल पे बेटने के लिए --

बहुत ही बाइक लगे है बड़े बड़े पोस्टर लगे है दीवाल पे बड़े बड़े बुल्डिंग --

ये मार्किट है जहा पे लोग बेठ के खाना खारे उनकी शॉप है और कुर्सी भी लगे है टेबल भी लगे है एक बच्चा भी है एक बुजुर्ग भी है।

ये ऑफिस है ऑफिस में तिन सेटर लगे हुए है अ बहोत सारे काउंटर बने है कुर्सी भी रखे है पानी का बोटल भी है।

ए बरा सा ऑफिस है ऑफिस में पर्दे लगे है टेबुल हैं काउंटर है पोस्टर भी लगे है पंखा भी लगे हुए है और--